हम देख पा रहे हैं के कुछ लोग जोके बैंड बाजा बजा रहे हैं मतलब कुर्ता पजामा पहन कर हैं।

जिसमें कि इंग्लिश में भी एक तंदूरी चाय लिखा है और ऊपर भी हिंदी में तंदूरी चाय स्पेशलिस्ट लिखा है और यहां पर बहुत सारे कोलर रखे हैं और मतलब फैन पापे --

और यहाँ पर के मतलब इनके प्राइज रेट भी लिखे हैं।